इस दृश्य में एक बाइक दिखाई पड़ रहा है जो की लाल और काले रंग का दिखाई पड़ रहा है।

ये एक बहोत बड़ा सीढ़ी लगा के उसपे बैठा हुआ है।

एक साइड एक पोस्टर भी दिखाई पड़ रहा है जो कि ब्लू रंग का है और एक लाल रंग--

बगल में बहुत सारे पोस्टर लगाए हुए हैं एक पोस्टर नीला सफेद रंग का दिखाई पड़ रहा है उसपे मोदी जी का पिक्चर बनाया हुआ है।

इस तरह से हमें ब बांस टेंपू वगैरह हमें दिख रहे हैं।

सामने में चार चेयर लगाया हुआ और चारों पे चार आदमी बैठे हुए हैं।

ऊपर में दो लाइट्स दिखाई पड़ रहे हैं नीचे की फर्श सफेद दिखाई पड़ रही हैं।

एक डब्बा रखा हुआ जो की भूरे रंग का दिखाई पड़ रहा है।

आस पास बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए है जोकि हरे रंग के है।

इसका पूछ हल्का हरा ब्राउन कलर का भी दिखाई पड़ रहा है।

इधर बाहर की ओर बहुत सारे उ तिरंगे लगाए हुए हैं।